ये एक स्टेज बनाया गया है वरमाला के लिए और इसे बोहत अच्छी तरीके से फूलों से इसे सजाया गया है और यह देखने में बोहत ही सुंदर लग रहा है।

और लोग खेती करके अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं।

उसे उससे बिजली उत्पादन सिचाई और भी बहुत प्रकार के कार्य करते हैं।

वो लोग खरीदते हैं किसी को उपहार के तौर पे देने के लिए शादी विवाह में।

उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे काफी अच्छी क्वालिटी के पेट्रोल मिलते हैं प्योर एकदम और यहां पे --

और इसमें बहुत सारे लोग आते है बॉडी बनाने कसरत करने एक्सरसाइज करने।